यहां पर हम बहुत सारे घी और बटर के डब्बे देख सकते हैं।

यहां पर एक डीप फ्रीजर और एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर लगाया गया है।

वॉलो पर सुंदर डिजाइन बनाया गया है।

यह एक नदी का दृश्य है।

यह एक साइकिल की दुकान लग रहा है।

यहां पर एक बिल्डिंग हम देख सकते हैं।

फर्श पर लाल रंग की लंबी सी कारपेट को बिछाया गया है।

दीवाल पर एक प्लस को टंगा हुआ देख सकते हैं।

यहां पर छोटी छोटी हरे रंग की पौधे देख रहे हैं।

यहां पर हम कुछ खिड़की दिख रखा है।

बहोत सारे गाड़ियों को पार्क किया गया है।

सीलिंग पर अनोखी लाइट्स लगी हुई देख सकते हैं।

मैदान पर हल्की हरि-हरि घास उगी हुई दिख रही है।

यहा पर कुछ दीवाल पर लाल रंग का पेन्ट दिख रहा है।

यहां पर कुछ लाइट प्रफील का प्रयोग किया गया है।

जो एक माल का दृश्य लग रहा है।

यहां पे बहोत सारे मूर्ति बने हुए दिख रहे हैं।

बहोत सारा सब्जियों का स्टाल दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

दीवाल पर एक बहुत ही सुंदर चित्रकार पेंटिंग दिख रहा है।

यहां पर एक औरत अपने ठेले पर कुछ सामान बनाती हुई दिख रही है।

यहां पर बहुत सारे पैकेट फूड्स को रखा गया है।

यहां पर मिट्टी के बने हुए बहोत सारे गमले दिख रहे हैं।

पीछे कुछ बड़े बड़े वृक्ष उगे हुए हैं।

सीलिंग पर कुछ फैन और लाइट्स लगे हुए देख सकते हैं।

पीछे हम हर तरफ नीली लाइट्स दिख रही है।

यहां पर कुछ वृक्ष उगे हुए दिख रहे हैं।

हां पर हमें एक बहुत ही विशाल सुंदर बिल्डिंग दिख रहा है।

बगल में छोटे-छोटे पौधे को लगाया गया है।

काफी सारे कस्टमर बैठे हुए हैं।

यहां पर हमें एक रेस्टोरेंट रिजॉर्ट दिख रहा है।

यहां पर तीन युवक गाड़ी के समीप खड़े दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत से सुंदर आर्टिफिशियल सामाने रख गई है।

यहां पर एक बड़ा सा बोर्ड व्हाइट रंग का है।